चित्र के माइन एक आदमी है जको खड़ो है बि के लार घणा सारा मजदूर खड़ा है।

इश चित्र में एक गाय खड़ी है गाय को कलर कालो है कण एक लुगाई और आदमी है।

लार एक घर को गेट खुला हैऔर झाको बाक ईट को मकान है।